यहाँ पर हमकों एक टेंट दिखाया गया है जिसमे की खाना च चलता हुआ भी दिखाया गया है।

लगी हुई हैं सफेद रंग की कुर्सियाँ हैं एंट्री गेट पर स्कूटरी जाती हुई दिख रही है। टेंट के नीचे कारपेट भी बिछा हुआ दिख रहा है जोकि यल -- जो कि ग्रीन और रेड रंग का है।

टेनिस पे मार्बल ब्लैक एंड वाइट रंग का हमको दिखाई दे रहा है। दो पोल भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। खड़े हुए ऊपर एक मंजिला और दिखाई भी दे रही है।

यहाँ पर हमको बहुत ही खूबसूरत पेड़ दिखाई दे रहे हैं जोकि काफी ज़्यादा अच्छे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमको कुछ खेल की जंजीरें दिखाई जा रही हैं जो की जंजीरें ग्रीन लाइन से बनी हुई हैं। पीछे के साइड बिल्डिंगे भी दिख रहीं हैं।

यहां पर हमको बहोत ही खूबसूरत तरीके से एक फोटो खींची हुई यहां पर हमको दिख रही है। यहां पर हमको कुछ आदमी जाते हुए भी दिख रहे हैं और सामने की साइड एक सड़क भी जाती हुई दिख रही है।

यहाँ पर हमको एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ नाम से दिख रहा है। यह मेरठ स्थित हमको दिख रहा है।

यहाँ पर एक हमें बहुत ही सुन्दर तीन मंजिला बिल्डिंग दिख रही है। जिसमे की एक हमें ग्रीन रंग का जेनलेटर भी दिख रहा है।